जो एक टेबल पर बैठाया गया है।

यहां बच्चों का खेलने के लिए बहुत सारा सामान रखा गया है।

सामने एक चेयर दिख रहा है।

में कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं कुछ गाड़ियां खड़ी दिख रहीं है।

अन्दर बहुत सारे व्हाइट कलर के लाइट जलाए गए है।

सामने एक सड़क दिख रहा है।

यहां दो चेयर बनाए गए हैं जो काट का है।

सामने एक आदमी खड़ा है।

यहां एक चौकी पर बहुत सारे बोरे का पैकेट रखा हुआ है।

बगल में बहुत सारे चिप्स कुरकुरे जाली का फोटो लगाया गया है।

हां बहोत सारे गैस सिलेंडर दिख रहे हैं।

यहां बहुत सारे कपड़ा लटकाया गया है।

यहां बहुत सारे बेड लगाए गए हैं।

एक कमरा है यहाँ बहुत सारे ब्लैक कलर के चेयर रखे हुए है।

बगल में बहुत बड़ी चट्टान दिख रहे हैं।

मिक्सर का प्लास्टिक फेका हुआ है बगल में एक और पत्थर का चट्टान दिख रहा है।

सामने दो बाइक खड़ा है जो ब्लैक कलर का है।

ये बड़ा सा बिल्डिंग है जो वाइट कलर का है ।

उसके बगल मे एक कार पार्क किया गया है।

इस चित्र में एक चट्टान से झरना गिरती दिखाई दे रही है।

यहाँ करकट से टेंट किया हुआ है।

बगल में दो कुर्सी रखा हुआ है जो रेड कलर का है।

जो एक बोर्ड पर लिखा है उसके नीचे एक बड़ा सा ब्लैक कलर का गेट है।

ये जालीदार बना हुआ है। वहां एक कुत्ता है।

यहाँ एक गाय खुटा मे बाधी दिख रही है।

यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

राम लक्ष्मण सीता मंदिर का चित्र है।

और वाइट कलर का गुंबज बना हुआ है जिसमें एक त्रिशूल लगाया गया है।

उसके ऊपर एक लाइट लगाया गया है।

यहां एक बेड लगाया गया है।

ने ओढ़ने का एक चादर रखा हुआ है।

वहां से आकाश सफा दिखाई दे रहा है।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

सामने एक मंदिर दिख रहा है।

इसके बगल में एक ध्वजा गड़ा हुआ है।

मंदिर के चारों ओर बॉउंड्री किया हुआ है।